इस स्टेशन के अंदर बहुत सारे लोग भी है।

यहां पर गोल्डन कलर से रंगा गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्किंग लॉट दिखाई दे रहा है।

सामने वाले आदमी ने ग्रीन और ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ है उसका शक्ल को ब्लर किया गया है।

पत्ता और लकड़ी से बना हुआ है।

सामने में फ्लावर पॉट्स भी है।

सामने में डोनेशन बॉक्स लिखा हुआ है।

हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पर चार मिस्रियां हैं।

एक ने रेड एंड ब्लैक कलर का चेक शर्ट पहना हुआ है और एक ने व्हाइट कलर का गंजी --

इन लोगों के शक्ले को ब्लर किया गया है।

इस पर भारतीय स्टेट बैंक भी लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर लाल और ब्लैक कलर का टेबल ऐन चेयर्स रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर मेंन्यू भी है और कुछ मसाले भी बहुत सारे लाइटस भी हैं।